एक पर हरे कलर की छतरी भी लगी हुई है।

साइड में तीन दुकान भी है।

एक लड़के ने सफेद कलर की टी शर्ट पहनी हुई है।

यहां पर एक बड़ा पेड़ भी है साइड मे एक मकान पर कुछ बॉक्स भी रखे हुए है सफेद रंग के।

साइड में कुछ औरतें भी खड़ी हुई है।

यहां पर एक माला भी लगी हुई है।

यहां पर एक खंभा भी खड़ा हुआ है एक पेड़ भी लगा हुआ है।

साइड में एक टेलीफोन भी है।

यहां पर कुछ सोफे भी है एक फैन भी लगा हुआ है।

पीछे ट्राली खड़ी हुई है बहुत सारी सामान रखने की।

यह एक बहोत बड़ा स्कूल है इस पर लाल रंग हो रहा है।